ऊपर में बहुत सारे सफेद कलर के लाइट भी लगाए गए हैं।

यहां पर कोई फंक्शन हो रहा है।

यह एक ए_सी बॉक्स है जो खराब हो गया है।

यहां सामने में एक रेड कलर का बस दिखाई दे रहा है।

यह एक बैंक का चित्र है जिसका नाम एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ है।

बगल में एक ट्रांसफार्मर भी दिखाई दे रहा है।

इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल ट्वेंटी फोर ऑवर लिखा हुआ है।

इसका नाम होटल रणदीप लिखा हुआ है।

जिसमें से बहुत औरतों की फोटो और मर्द के फोटो बनाए गए हैं।

एक ल औरत गठरी ले के माथे पे चल रही है।

यहां सामने में कुछ कुर्सियां भी लगी हुई है।

पानी के ऊपर में बहुत सारी पत्तियां दिखाई दे रही है।

एक कछुआ छोटा दिखाई दे रहा है।

जिसका नाम झारखंड नेशनल हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

यह एक घर का चित्र है।

कुछ पेड़ गमले में भी भरे हुए हैं।

और सामने में एक और पहाड़ दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं और लाइट भी लगे हुए हैं।